पास में बैग भी है और एक आदमी नीचे भी खड़ा है उसके पास भी बैग है।

एक में आदमी बैठा हुआ है बाकी सीट खाली--

इसमें कॉलेज की फोटो दिखाई जा रही है जो कि बहुत बड़ा सा कॉलेज है।

के आगे में दो गाड़ी भी लगी हुई है एक व्हाइट कलर की और एक रेड कलर की।

फॉर्च्यून ऑयल में और भी बहुत सारी चीजें हैं।

और लोहे की कुछ लाइन जैसा बना हुआ है उसके ऊपर एक लड़का चढ़ा हुआ--

और बाइके भी लगी हुई हैं दो-तीन बहोत सारे लोग भी हैं इधर-उधर जा रहे --

साइड में एक ठेले वाला भी कुछ बेच रहा है।

और ऊपर दीवार पे डिश टी_वी लगा हुआ है।

उधर तीन लोग आ रहे हैं उनके हाथ में एक कम्बल भी हैं।

एक जिम का फोटो है जो की बहोत बड़ा जिम है।

और दो आम के पेड़ उधर साइड हैं और कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं जिनमें से एक आदमी खड़ा है।

एक रोड पर से ली गई फोटो है जो कि सामने में एक मंदिर जैसा दिख रहा हैं।

और दीवार पर कुछ लिखा भी हुआ हैं और एक शटर हैं जो कि बंद हैं।

कि बहुत सारी सामान रखे हुए हैं दुकान में टंगे हुए हैं।

और एक आदमी दुकान के बाएं साइड बैठा हुआ है।

के बगल में भी बहोत सारे कोट टंगे में हुए--

ये एक पूल के ऊपर से लिया गया फोटो है जोकि देखने में बहोत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है।

फोटो में बहोत सारे बच्चे मैदान में कुछ खेल रहे हैं।

एक किताब पड़ी हुई है और एक पेन है।

और एक आंटी जी साड़ी पहन के इधर बैठी हुई है और उनके बगल मैं बहुत सारे बर्तन भी हैं।

और एक आंटी जी भी खड़ी हैं और दो तीन लेडिस बैठी हुई हैं।

इसके पास में एक पेड़ भी है जिसपे टंगा है और ढाबे के बाहर भी पोस्टर टंगा हुआ है।

इसके पीछे एक बोड भी लगा हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट --

और एक पेड़ का बहोत बड़ा सा जड़ भी है आगे--

और एक मोटरसाइकिल रखा हुआ है और उसके आगे में एक बहोत प्यारा सा घर है।

इसमे एक एच_पी का पेट्रोल पंप दिख रहा है की पेट्रोल पंप पे अभी कोई भी गाड़ी नहीं लगी हुई है।